यह एक अंडर पाथ है और इस अंडर पाथ के नीचे रिक्शा भी खड़ी हुई है।

इस मकान के गेट पर शीशे लगे हुए हैं।

चढ़ने की पैडी भी लगी हुई है।

ये यहां ये कुर्सी काले रंग की ह--

यह एक गाड़ी है और इस गाड़ी के ऊपर कुछ भी लगा हुआ है।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

यहां पर कुछ बाइके भी खड़ी हुई हैं।

ये एक नीले रंग का कुछ पड़ा हुआ है।

यह एक मकान है और इस मकान के बीच बीच में चार तमले भी खड़े हुए हैं।

लाइब्रेरी के सामने एक आले में भगवान की तस्वीर भी टंगी--

यह किसी के कपड़े की दुकान है और--

यहां पर पांच तोते बैठे हुए हैं।

यहां पर कुछ पेंट भी रखे हुए हैं और यहां पर एक बोतल भी रखी हुई है और--

इसके आस पास बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

एक कलंडर भी टंगा हुआ है।

यह एक बच्चों के पढ़ते हुए की तस्वीर है।

यह एक जूतो की शॉप है और यहां पर लेडिस जूती भी है।

यहां पर ग्रीन भी लगी हुई है।

टीन सेट भी पड़ा हुआ है।

कुछ आदमी और कुछ औरत ऊपर जा रहे हैं।

यह पांच छह लड़के कहीं पर जा रहे हैं।

और नीचे एक आदमी भी उसकी बात में खड़ा है।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

कौन है यहां पर कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

और एक आदमी का भी चमक रहा है।

पीछे पन्नी से कवर कर रखा है और यहां पर कुछ पटड़े भी रखे हुए--

इसकी बराबर में दुकान भी है और--

यह स्कूल में पढ़ाते हुए टीचर की फोटो है वो--

यहां पर बेंच भी पड़ी हुई है।

पीछे एक वाइट रंग का हाथी भी खड़ा हुआ है।

यह किसी की किसी आदमियों की तस्वीर है।

यह एक मकान के अंदर की तस्वीर है।

इस होटल में मेज भी पड़ी हुई है और इस होटल में एक आदमी का हाथ भी चमक रहा है।